इस पिक्चर में यह दिख रहा है कि यहां पार्किंग है सामने पिज़्ज़ा की दुकान है छिगो पिज़्ज़ा एक आदमी खड़ा है।

इसपे डिजाइन बने हुए हैं बहुत सारे ये लाल--

कोच वीडियो बना रहा है शीशे में और ऊपर एक मेडल लगा हुआ है साइड में दो मेडल लगे हुए--